तस्वीर के अंदर हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है और अंधेरे में जलती हुई रोशनी--

तापती लिखा हुआ है हमें दीवार पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टेबल और कुर्सियां --

हमें एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है और एक बोर्ड रखा भी हुआ है जिस पर पीस लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी झोन लिखा हुआ है ।

ऑटो भी खड़े हुए हैं और लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं ।

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और लाल गुंबत वाला ये हमें बनी हुई इमारत दिखाई दे रही है ।

नीला हमें एक ये शेड अ अ नजर आ रहा है और पास में हमें खाली ज़मीन पड़ी हुई एक सड़क और एक बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है।

हमें नगर निगम की पानी की टंकी दिखाई दे रही है। भीड़भाड़ दिखाई दे रही हैं।

और कुछ लोग भी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे पेड़-पौधे आसपास लगे हुए हैं ।

एक बड़ी सी हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीले रंग की जिस पर मूर्तियां भी बनी हुई हैं।

हमें बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे है और नागपुर ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है।

और हैमर का बोर्ड लगा हुआ है आइसक्रीम पार्लर है ये और बाहर बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

अ पिलर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तीन मजदूर है जो काम कर रहे हैं ।

इस तस्वीर के अंदर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है।

और उसके नीचे बिल्डिंग के हमें कार खड़ी हुई नजर आ रही है ।

एक बेड लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है जिस पर एक टॉवेल रखा हुआ है चादर बिछी है।

और बहुत सारी हमें भीड़-भाड़ इस तस्वीर के अंदर नजर आ रही है ।

और इसमें हमें इसके अंदर हरे भरे पेड़ पौधे--